ये इस फोटो में पहाड़ नजर आ रहा--

मुझे इस फोटो में स्लाइड्स नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में वाटर पार्क नजर आ रहा है।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

मुझे इस फोटो मे कुछ लोग नज़र--

मुझे इस फोटो में पत्थर नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में एक लड़का नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में ऑफिस नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो में गोदाम नजर आ रहा--

इस फोटो में गमले नजर आ रहे है।

हमें चट्टानें नजर आ रही हैं।

इस फोटो में स्कूल नजर आ रहा है।

इस फोटो में पेटीएम नजर आ रहा है।

इस फोटो मे लैपटॉप नज़र आ रहा है।